इमारत के ऊपर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिस पर कुछ लिखा हुआ है संभवत कन्नड़ भाषा में।

यह तस्वीर एक दुकान को दिखाती है जिसमें कई घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स है आप रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन और टी_वी जैसे सामान देख सकते हैं।

दुकान के अंदर का दृश्य साफ और व्यवस्थित है एक आदमी भी दिख रहा है जिसने ब्लू रंग की चेक --

एक लाल और एक हरा एक सफेद कार और एक स्कूटर भी दिखाई दे रहे हैं।

जो एक मंच पर बनी है मंच पर जाने के लिए लाल रंग की सीढ़ियां हैं।

सड़क के किनारे दूसरी तरफ एक पुल है और कुछ हरियाली दिखाई दे रही है।

तस्वीर में धुंध का मौसम दिख रहा है एक आदमी ने हरे रंग का स्वेटर पहन रखा है दूसरे आदमी ने पीले रंग की--

यह तस्वीर एक व्यक्ति को दिखाती है जो झाड़ू से पत्तियां को साफ कर रहा है।

तस्वीर में सड़क पर यातायात दिख रहा है जिसमें मोटरसाइकिल सवार और अन्य वाहन शामिल है।

सड़क के किनारे दुकानें और इमारतें भी दिखाई दे रही हैं यह तस्वीर अरुणाचल प्रदेश के शान--

इस तस्वीर में एक खुला क्षेत्र दिखाई दे रहा है कुछ लोग और वाहन भी दिखाई दे रहे हैं।

दो औरतों ने साड़ी पहन रखी है डेस्क पर एक लैपटॉप कुछ कागजात और अन्य सामान रखे हुए हैं।

सामने की ओर रंगीन रोशनी की सजावट है अंदर कुछ टेबल और कुर्सियां दिखाई दे रहे हैं।

इमारत में लाल रंग की खिड़कियां है और बालकनी है इमारत के सामने एक पार्किंग स्थल भी है आसमान नीला है और हल्के हल्के बादल सफेद दिख रहे हैं।

टावर और उपकरण रोशनी से जगा मग लग रहे हैं यह अंधेरे का समय आसमान गाढ़ा नीला का है।

अलमारियां किताबों से भरी हुई है और व्यवस्थित रूप में रखी हुई गई है।

पृष्ठभूमि में कुछ और अलमारियां भी दिखाई दे रहे हैं जिससे पता चलता है कि यह एक बड़ी लाइब्रेरी का हिस्सा --

यह किसी इमारत के अंदर का प्रवेश द्वार का क्षेत्र है जहां एक सफेद गमले में खजूर जैसा पौधा है और सोने की खम्बो से लाल रंग की रस्सी का बेरियर बना है।

यह तस्वीर एक घर के बाहरी हिस्से को दिखाती है जिसमें एक सजावटी लोहे का मुख्य द्वार लगा हुआ है।

लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए या चलते हुए दिख रहे हैं।

बाल किसी हेयर स्टाइलिस्ट या ट्रीटमेंट के लिए तैयार किया जा रहे हैं।

प्लेट गोल है साथ में अन्य व्यंजन भी दिख रहे हैं और छोटी कटोरियां है एक जग है जो कि पानी का जग है जग के बगल में एक गिलास भी है।